चारों तरफ हरियाली है। पत्तियों का रंग हरा है आसमान नीले ओ --

चारों तरफ जिम के लिए मशीने रखी हुई है और एक बोहोत ही बड़ा ग्रीन रंग का बोल रखा हुआ है डंबलस है।

चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई है और चारों तरफ बैठने के लिए टेबल और कुर्सियां लगाई हुई हैं।

चारों तरफ टीन्स लगाई हुईं है और लोहे का इस --

रूम में एक बहुत सारे नाइ खड़े हैं और कुर्सियां लगाई हुई हैं बैठने के लिए टेबल लगाए हुए हैं और --

ओर टप में लाल रंग से कुछ रखा है ओर आस पास लोग बैठे हुएं है।

गिराज में बहुत सारे लोग गाड़ी ठीक करवा रहे हैं। गाड़ियों का रंग सफेद हैं और नीचे बोहोत सारे टूल्स गिरे हुए हैं।

पानी के किनारे बोट खड़ी है। जिसमे नीला रंग किया हुआ है और बैठने के लिए लकड़ी के स्टूल बनाए हुए हैं।

सड़क के किनारे ग्रामीण बैंक ऑफ आयरवाद लिखा हुआ है।

तीन मंजिला इमारत है। जिसमें सफेद रंग किया हुआ है और सपीकर लगाया हुआ है। आसमान नीले रंग --

ओर चारों तरफ बॉक्सेस छोटे-बड़े रखे हुएं हैं जिनमें लाल पीले रंग के बॉक्सेस हैं।